इसमें मुझे एक कार --

इस इमेज में मुझे एक बहोत--

एक गांव दिखाई दे रहा है जिसमें--

जो की एक बार में बना--

मुझे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का--

है जिसमे एक बहुत बड़ी व्हाइट कलर की शिप --

लिए टेबल और चेयर भी लगी--

की लाइट भी लगी हुई--

थे जिसमें दो कर्मचारी ऊपर चढ़--

रहा है जिसमें कई सारी अलग--

इस इमेज में मुझे एक सोफे का सेट --

औद वहां कई सारे लोब।--

बहुत सारा अलग-अलग ग्रॉसरी के समान रखा--

इस इमेज में मुझे एक--

के जो कि बहोत ही ज्यादा अच्छा लग रहा हैं।

है जिसमें अलग अलग तरह की बुक्स रखी हुई है।